गमला के ऊपर में अंदर में बहुत सारा मछलियां दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक ठो बड़ा वाला पेड़ भी नजर आ रहा है।

बहुत सारा टेबल चेयर लोग भी नजर आ रहा है।

बहुत सारा खिड़की भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान नजर आ रहा है।

पीछे में बहुत सारा आसमान दिखाई दे रहा है।

और पीछे में एक खिड़की भी नजर आ रहा है।

जमीन में एक बिस्तर जैसे भी नजर आ रहा है।

इसमें बहुत सारा फ्लावर पॉट्स दिखाई दे रहा है।

और इस अ फोटो का बहुत सारा बलकनी भी नजर आ रहा है।

और बहुत सारा क्रीम लुक दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारा खिड़की भी नजर आ रहा है।